मोटर साइकिल लगा हुआ उधर रोड है पेड़ है।

पर बादल लगा हुआ है --

नीचे जमीन है बना हुआ उसके पीछे --

स्टाफ को बता रहा है लोनी से क्या होगा कैसे होगा काम और लगा हु शटरिंग भी लग रहा लगा हुआ बढ़िया से ।

ये अम मंदिर मंदिर है और मोड़ भी है जो कृष्ण कन्हैया अपना --

ये नदी है नदी के

फुटबॉल सब मिल रहा है यहाँ पे।